इस इमेज मे मुझे दीवार दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है और कुछ बना हुआ है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है कुछ --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

दिख रही है और नीचे का पक्का है जो थोड़े भूरे और काले रंग का है जो लाइन लाइन है।

दिखाई दे रहा हैं जो रेड कलर का है और एक औरत हैं जो बैठी हुई है लाल कलर की साड़ी पहनी हुई हैं।

एक फिसलने वाला है जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है और एक औरत है जो ब्लू --

जो व्हाइट कलर के कपडे हुए है और निचे मोजा पहने हुए हैं व्हाइट और ब्लैक में --

और दो बच्चे हे जो ग्रीन कलर कपडे पहने हुए हे एक रेड मोजा हे और एक आसमानी कलर का मोजा हे पीछे कांच है कुछ जो लड़के है जो बैठे है।

एक टा छत --

इस इमेज में मुझे बहोत बड़ा नदी है जो दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और अ थोड़ा सा पेड़_पौधे दिख-

और एक मशीन है जो दिख रहा है जो चरकोट में है जो ग्रे कलर का दिख रहा है भव्य पाइप है जो निकले हुए है।

पर्पल कलर का दिख रहा है जो ईटा जैसा बना हुआ है और एक स्कूटी जो की --

इस इमेज में मुझे एक कार है जो दिखाई दे रहा है जो व्हाइट कलर का दिख रहा है और गुलाब फूल है जो इसमें लगे हुए है।

टी शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ जो ग्रे कलर का एक और बच्चा है जो--

और हाफ पेंट पेहना हुआ है जो ग्रे कलर का है एक और बच्चा है जो--

और ब्लू कलर का दिख रहा है जो बलून से बना हुआ है और शीशे दिखाई दे रहे है चार दिख रहे है।

यहाँ बाउंड्री बना हुआ है एक ऐंगल है जो व्हाइट कलर का दिखाई दे उसमे बत्ती लगी हुई है।

इस इमेज में मुझे रोड जैसे दिखाई दे रहा है जो थोड़े-थोड़े पत्थर गिरे हुए है जो भूरे-भूरे दिख रहे है।

इस इमेज में मुझे एक दुकान दिख रहा है जो बहोत सारा डब्बे जो रखे गए है जो कुछ कपड़े के दुकान दिख रहे--

एक पोल है जो दिख रहा है ट्रस्फरमा है जो दिख रहा है जो बोहत बहुत सारे तार है जो लटके हुए है।

आगे में एक स्टेचू हैं जो ब्लैक रंग का दिख रहा है जो हाफ पैंट पहना हुआ है टी शर्ट पहना जिसका सर है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है फुटबॉल है जो नीचे है।

जो रेड कलर का दिख रहा है बॉउंड्री है जो रेड कलर का दिख रहा है और तसफर्मा है जो--

प्लेटो है उसमे मरी हुई मछलियाँ रखी गयी है जो ग्लैन हे जो दिख रहे है जो--

इस इमेज में मुझे बहोत कलरफुल इमेज दिख रही है जो एक तालाब है जो ग्रीन कलर का जो छोटा-सा है गड्ढा बना हुआ है।

और एक स्विच है जो दिख रहा है एक कंप्यूटर है जो दिख रहा है एक लैपटॉप एक टेलीफोन एक माउस एक रिमोट --